इस फोटो में मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक टैंक दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे पोस्टर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बहुत सारी दुकानें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे कुर्सी टेबिल दिखाई दे रही है।

लोहे के पाइप दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे रेता गिट्टी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे--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

इस फोटो मे मुझे मेड़ दिखाई दे रहें हैं।